आज-कल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी व्यक्ति को एक मनोरंजन का साधन अत्यधिक पसन् होता है।

अगर सड़क अच्छा होता है तो रोड पर आवागवन करने में ज्यादा कठनाईयाँ नहीं होती है ।

यहाँ पर खेल से सम्बन्धित अनेक प्रकार की गतिविधियाँ भी होती है

में कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है।

एवं प्लेग्राउंड पर विभिन्न प्रकार के गतिविधियाँ होती है जिससे--

वॉटर पार्क में आज-कल अधिकांश रूप से--

यहाँ पर खेल-कूद सम्बन्धित समस्त क्रियाएं भी होती हैं जिससे बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते हैं ।

सभी व्यक्तियो को अपना जीवन यापन चलाने के लिए हर एक रोजगार --

इसीलिए हमें सभी व्यक्तियों का सामान एक दृष्टि से करना चाहिए।

वॉटर पार्क में खेल-कूद से सम्बन्धित सभी प्रकार की चीजे उपलब्ध होती हैं।

तथा एक अच्छे सड़क से परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया हैं--